एक कांच का फ्रिज है एक लाल कलर का हैं।

दीवाल पर एक्स रे को देखने के लिए--

जिसमें स्टील की टेबल और स्टील की--

ये एक स्कूल ग्राउंड की इमेज है जिसमें--

बस के दरवाजे पे खड़ा हुआ है बाहेर में--

गुलाबी कलर का ये पुता हुआ है अंदर से बाहर।

और जो झरना जो गिर रहा है उसका पानी दूधिया रंग का दिखाई दे रहा--

एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है उसके अंदर कुछ--

टीन शेड है जो येलो और ब्लू कलर की मैटिंग लगी हुई है।

ऑफ व्हाइट कलर का ये पेंट किया हुआ है।

जिसने चेक्स की शर्ट और ब्लू जींस पहनी हैं।

टेबल है टेबल पे ब्लैक कलर का --

ब्लू कलर का कूलर है शेल्फ में सिरप और कुछ दवाईयाँ रखी हुई हैं।